बालकनी में एक किचन दिखाई दे रही है।

बांस भी दिखाई दे रही है साईकल भी दिखा दे रही है।

वर्कर्स के हेड में कुछ येलो कलर और कुछ ब्राउन कलर का हेड केप भी दिखाई दे रही है।

मुझे यहां बहुत सारा आदमी लाल रंग के कपड़ों में दिखाई दे रही है।

पीछे ऊपर के गेट में ऑरेंज कलर के फूल लगाया हुआ दिखाई दे रही है।

काउंटर में बेकरी आइटम्स भी दिखाई दे रही है।

मुझे यहां एक जिम का कमरा दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पे एक ग्रीन कलर कि घर दिखाई दे रही है घर के सामने में एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रही है पिछे--

दुकान के रंग ग्रीन कलर है।

पार्किंग जंगहा में बहोत सारा गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

पीछे बहुत सारा स्नेक्स भी दिखाई दे रही है।

दो कलर के चेयर दिखाई दे रही है एक रेड कलर और एक वाइट कलर कि।

मुझे यहा एक तालाब दिखाई दे रही है तालाब के बगल मे--

मुझे यहां बहुत सारा स्कूटी दिखाई दे रही है।

अजंता डेयरी दिखाए दे रही है।

एक दो पेड़ भी दिखाई दे रही है सामने में एक पत्थर भी दिखाई दे रही है।

दुकान के बाहर दो चेयर भी दिखाई दे रही है।

दो औरत अपना सामान बेचती हुई दिखाई दे रही है।

नीचे रेड कलर की चिलीज दिखाई दे रही है।

मुझे यहां एक शॉप दिखाई दे रही है।

पीछे में दो जहाज दिखाई दे रही है।

सामने बड़ा सा जंगल भी दिखाई दे रही है।

जो कूलिंग सिस्टम से कनेक्टेड है वह भी नजर आ रही है।

मुझे इस पिक्चर में काली मां की मूर्ति दिखाई दे रही है।

पीछे में एक आदमी दिखाई दे रही है।

मुझे यहां एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।